आ आगे की साइड कुछ लोग खड़े हुए है ।

एक लड़के ने इसमें जिसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है।

ऊपर यह शॉप के ऊपर बैनर में लिखा गया है श्री मुरारी सेल्स ।

जिसमे काफी सारी बुक्स एंड किताबें पड़ी हुई है ।

दीवार में ही मुझे बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है ।